यहाँ पे आरती बुक सेंटर है जो की यहाँ पे काफी सारे बुक्स मिलते हैं जो भी बुक चाहे वो आ के ले सकते है चाहे टैंथ चाहे मैट्रिक का इंटर का बी.ए. का यू.पी.एस.सी. का इग्नू का कुछ भी बुक चाहे होगा आ के ले सक --